यहाँ हमें एक खाली मैदान दिखने को मिल रहा है यही हम यहाँ चर्च पर कृतियांस का होली मार्क देख पा रहे है आस-पास हमें पेड़-पोदहे और कुछ गाड़ियां भी नज़र आ रही है ।

रास्ते का द्रस्य है जिसके उस पार हमे बहुत सारे जे_सी_बी रखे हुए दिखाई दे रहे है जिनमे से कुछ ग्रैंड भी है।